एक इक्कीस लिखा हुआ है झूला रखा हुआ है उपर कुछ डिब्बे रखे हुए है और --

बोर्ड टंगे हुए है। जो की केरम बोर्ड है।

कुछ लोग चल रहे है। जोकी गाजरी कलर के कपड़े पहने हुए है। सामने लाल कलर का गराज पे एसबीआई का बोर्ड लगा हुआ है।

सामने एक लड़का बैठ खड़ा हुआ है। जो रेलिंग बनी हुई है। सामने कुछ नन्ही एक बिल्डिंग सी बनी हुई है। कुछ बोहत सारी खिड्किया ऊपर एक तीन लगी हुई है। इसमे कपड़े सूख रहे है।